और राईट साइक देखेगे तो ब्लैक कलर की रोङे लगी हुए हैं। उसके पीछे दो बन्दे और बैठ के मेहनत कर रहे हैं। और लाइट लगी हुए हैं।

और एक पीले कलर की व चकोर सी बाल्टी टब रखा है जिसमे मछलिया भरी है और तराज़ू है सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए है।

सामने रेड कलर की मशीन लगी हुए है और एक लड़का खड़ा है। सामने जो रोड़ पकड़ा हुआ हे वाइट कलर की ब्लैक कलर रबड़ की पलेटे लगी हुई है उसमे--

यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है। जो गुलाबी कलर की टीशर्ट पहनें है। और उसके पीछे मिरर लगे हैं। और वाइट कलर का पेन्ट हुआ है और यलो पेन्ट हुआ हैं।

ये एक स्टेशनरी की शॉप है। जहापे बहुत सारे पेन रखे हैं सामने एक बन्दा खड़ा हैं।

ऊजा कलर ब्लैक कलर व्हाइट कलर और लेफ्ट में देखंगे तो व्हाइट कलर की बुक्स जमी हुई है ऊपर कलरफुल झंडी लगी हुई है और सामने एक बंदा खड़ा है व्हाइट टीशर्ट में ऊपर सेंटर में ब्लैक कलर हुआ।

ये एक किराने की शॉप है जहा पर देखेगे एक आदमी खड़ा हुआ हे वाइट शर्ट और उसके के लेफ्ट राईट साइड में एक केरेट रखा हुआ रेड कलर --

''यह एक मेन्स पार्लर है जहापे वाइट कलर के उपर पेन्ट हुआ हैं। सामने लकड़ी का वुड कलर पेन्ट हुआ हैं।''

ये एक कोई बैंक है। जहां पे दो बंदे खड़े हैं एक वाइट शर्ट में बंदा खड़ा है एक क्रीम शर्ट में बंदा खड़ा है।